बहोत सारे अलग अलग प्रकार के अगरबत्ती रखे हुए है।

किराये का रूम है दो पलंग है।

आसपास बहोत सारे पेड़ पौधे हैं जंगल हैं।

और घर में बहोत बड़ा गेट है जोकि काले और पीले रंग का है बाहर दो गाड़ी भी खड़ी हुई है बड़े-बड़े पेड़ है सफेद रंग की बिल्डिंग है।

और ये रात का नजारा है आजू बाजू दोनों तरफ से रोड है बहुत सारी टू व्हीलर बाइक खड़ी हुई है एक कार भी खड़ी सफेद रंग की।

एक सफेद रंग का ड्रम रखा है सामने दो डस्टबिन रखे हैं।

दो आदमी खड़े एक बैठा एक खड़ा है दुकान में स्नैक बार लिखा हुआ है।

सफेद रंग का ये कमरा है सफेद रंग के पंख लगे हैं।

इस तस्वीर में जो फोटो एक वाटर पार्क की है जिसमें बहोत सारी लड़कियां नहा रही है।

एक आदमी फोटो खिंच रहा है फोन से बहोत सारे लोग व्हाइट कलर का ड्रेस पहने है जो सब बच्चे है और बहोत सारे बड़े लोग एक सूट पेहन के बैठे है जो कि बहोत अच्छा --

इस तस्वीर में जो फोटो है यह एक पेट्रोल पंप की है जो की नीले और नारंगी रंग का है।

बहोत सारे लोग पेट्रोल डला रहे हैं एक ऑटो भी खड़ी है काले रंग का पेट्रोल पंप वाले जो वर्कर है उन्होंने ऑरेंज कलर की शर्ट पेहनी--